इस इमेज में देखिएगा यहां पर स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है और सामने एक दरवाजा भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने बहोत सारी एल_सी_डी दिखाई दे रही हैं।

इस इमेज मे देखियेगा सामने बड़ा सा मैदान दिख रहा है और बड़ी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा सामने मंदिर दिखाई दे रहा है और कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में एक दुकान दिखाई दे रही है जहां पर बहोत सारी किताबें नजर आ रही है।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

इस इमेज में देखिएगा यहां पर मेला दिखाई दे रहा है और बड़ा सा मैदान भी नजर आ रहा है।

इस ईमेज में देखिएगा यहां पर काफी सारा डेकोरेशन दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर तालाब दिखाई दे रहा है और बोट और कुछ पंछी भी नजर आ रहे हैं।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

इस इमेज में देखिएगा सामने बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है और बड़ा सा गेट भी --

इस इमेज में देखिएगा यहां पर सामने टेबल और कुर्सी रखी हुई नजर आ रही है।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

इस इमेज में देखिएगा यहां पर कुछ कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है और सामने बिल्डिंग भी नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर कुछ झंडे दिखाई दे रहे है और गेट के पास एक कार खड़ी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक रास्ता दिखाई दे रहा है और बैठने की बेंचेज भी नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक किला दिखाई दे रहा है जिसकी खिड़की और दरवाजे भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है और एक लड़का सामने बैठा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज मे देखियेगा यहां पर सामने एक सामुदायिक केंद्र शटर दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है और फाउंटेन भी चलते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने एक गेट दिखाई दे रहा है और अंदर दो कपल नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर पेड़ के नीचे एक ब्लू कलर का ट्रैक्टर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।